चीज की तैयारी की जाती है। जिसमें आगे में एक ब्लैक कलर का शटर है। जिसके अंदर घुसा जाता है फिर उसके अंदर शटर है।

ये पिक्चर एक पार्टी फक्शन की है। जिसमें दो बिल्डिंग है। दोनों बिल्डिंगस काफी अच्छे तरीके से सजाया गया है और इस बिल्डिंग के लॉन में एक --

इस पिक्चर में एक महाकाली कफेक्शनरी एंड बेकरी शॉप दिखाया जा रहा है जिसमें काफी तरह-तरफ के --

और उसकी सेल्फी जो है व मिरर में दिखाई दे रही है। उसके पीछे में दो मिर्रोर्स लगे हुए हैं।

यह पिक्चर एक कंप्यूटर क्लास की है जिसमें काफी सारे कम्प्यूटर्स लगे हुए हैं और ऊपर की इंटीरियर डिज़ाइन काफी खूबसूरत है।

वेट कर रहे हैं और उस बैंक के बगल में ए.टी.एम. है।

और एक है द बारबर्स ।

और ऊपर आकाश जो है वो काफी अच्छा है। थोड़े-थोड़े बादलो मैं चाँद छिपा हुआ है।

अं काफी सारे डंबल्स रखे हुए हैं अलग अलग मेजर के अलग अलग नंबर के।

यह पिक्चर एक कैनरा बैंक का है जो जालौन ब्रांच --

इस पिक्चर में एक ट्रेन पासिंग करती हुई दिखाई दे रही है और वो ट्रेन इलेक्ट्रिक ट्रेन है।